इस फोटो में मुझे एक महिला और बच्चे दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही --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

इस फोटो में मुझे खदान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बिजली की तारे दिखाई दे रही--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

इस फोटो में मुझे छोटे छोटे गमले दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गाय दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे जानवर का पोस्टर --

इस फोटो में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे र --